और आदमी के पीछे बहुत सारा मिट्टी रखा हुआ है और पीछे घर भी हैं।

और यहां पे कलरफूल पंडाल लगा हुआ है।

इस मैदान में बहोत सारे हरे भरे घास हैं मैदान में दो गो आदमी घूम रहा है।

पत्थर रखे हुए हैं नदी का रंग बहोत ही साफ है।

यह एक दुकान का चित्र है इसका नाम आर्यन बुक एंड जनरल स्टोर है।

यह एक मैदान का चित्र है यहां मैदान में बहोत सारी हरी भरी घास है मैदान में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी --

बिहार लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का कलर व्हाइट है यानी सफेद है वह बहुत सुंदर लग रहा है इसमें बहोत सारी खिड़कियां है।

बहोत अच्छी अच्छी गाड़िया है ग्लैमर है स्प्लेंडर है और एक वेगनार भी खड़ी है।

यह बहुत सुंदर दिख रहा है यहां पे घासे सारी सूख चुकी हैं कहीं कहीं हरी भरे पौधे दिख रहे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं।

इसके अंदर बहोत से लोग काम कर रहे हैं।

और आस पास बड़े बड़े पेड़ है और वह पेड़ में जामुन निकले हैं।

और यह बहोत सुंदर दिख रहा है आस पास बालू मिट्टी सब गिरे हुए हैं।